और वहां पर शीशे भी लगे हुएं हैं बहुत सारे सामान मौजूद हैं जिससे वो बा--

यह दृश्य एक रिजॉर्ट की है जहां पर बहुत सारे पेड़ पौधे हैं।

यह एक होटल है होटल में लाइट लगी हुई है।

और चेयर भी हैं जो व्हाइट एंड ब्राउन कलर की हैं बाहर भी मैदान है वहां भी गाड़ी लगीं हुए है।

और लोहे की है और तथा उसके अंदर एक पोल भी है।

यह दृश्य एक स्कूल की है स्कूल का कलर व्हाइट एंड ब्राउन है।

यह दृश्य हॉस्पिटल की है हॉस्पिटल का कलर व्हाइट है।

और इसका कलर है व्हाइट एंड ब्लू बहुत सारी ऊपर में लाइटें लगी हुई हैं।

ये दृश्य एक डी_एल_डब्लू सिनेमा हॉल की है।

आस पास बहोत सारे पेड़ हैं और रास्ते हैं।

तथा इस कॉलेज के हाल के गेट हरे रंग से किया गया--

ये जो दृश्य है बी डी कॉलेज झारखंड की है।

ये दृश्य एक जनरल स्टोर की है यहां पर कई कई प्रकार के कोल्ड ड्रिंक भी मिलते हैं।

वो कोल्डरिंग फ्रीज के अंदर रखा हुआ है फ्रीज का कलर है रेड --

और आस पास पेड़ भी हैं और बहोत सारे रास्ते भी हैं यहां।

दृश्य एक कंप्यूटर सेंटर की है यहां पे बहुत सारे लोग कंप्यूटर पे बैठे हैं।

और रोड पे चार चक्की गाड़ी है और बोर्ड ग्रीन कलर की है और गाड़ी वाइट कलर की है एक ऑरेंज कलर की है।